और छत में ए_सी भी लगी हुई है और कुछ ट्यूबलाइट भी लगी हुई है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ा ग्राउंड है।

और कुछ किताबें ड्रॉर में रखी है अंदर लोहे की--

और पीछे एक बिल्डिंग है इनके पास जो कि पुलिस स्टेशन है।